बाहर हमें बहुत सारे छोटे छोटे गमले के पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुर्गियों के पास एक छोटा सा घर भी बना हुआ है।

आस पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

गांव में पीछे बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।

यह तस्वीर एक नए बन रहे घर की है इस तस्वीर में बहुत सारे मिस्त्री काम करते हुए दिख रहे हैं।

तालाब में एक छोटी सी बोट भी चलती हुई दिख रही हैं।

यह तस्वीर एक कैफे की है। इस तस्वीर में हमे दो दोस्त कैफे में बैठे हुए दिख रहे हैं।

मेज पर बहुत सारा खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है मेज पर एक पानी की बोतल भी रखी हुई है।

यह तस्वीर एक मैरिज पैलेस की है इस तस्वीर में बहुत सारी कुर्सियां और मेज लगी हुई है।

आस पास छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।

यह तस्वीर एक नये खुले हुए पेट्रोल पंप की है।

यहां पर चोको चिप्स कुकीज भी पड़ी हुई हमें दिख रही है।

दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ दिख रहा है।

यह दृश्य एक घर का है।

इस तस्वीर में हमें एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक किताबें बेचने वाली दुकान की है दुकान पर बहोत ज्यादा रश हो रखा है।

यह दृश्य एक पेट्रोल पंप का है पेट्रोल पंप पर बहुत सारे व्हीकल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सूरज डूबता हुआ दिख रहा है।

गमलों में अलग-अलग तरह के फूल रखे हुए है।